यहाँ पे मुझे एक पेड़ दिखाई दे रहा है पेड़ के ऊपर कुछ टँगी हुई हैं।

लाइट जल रही है और स्टेज भी सजा हुआ है।

यहाँ पे एक गार्डन दिखाई दे रहा है। गार्डन के पीछे बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है। गार्डन मे एक लड़का जा रहा है। गार्डन के पीछे एक दो पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

सीढीया पे गमले रखे हुए हैं। नीचे रंगोली भी बरी हुई है।

नीचे एक पौधा भी रखा हुआ है अंदर काउंटर है अंदर बैठने के लिए सोफा भी लगा हुआ है।

यहां पर एक होटल दिखाई दे रहा है होटल सम्राट पैलेस है सामने एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

साइड में ट्रे रखे हुए हैं प्लास्टिक के और एक कुर्सी भी नजर आ रही है।

यहां पे कुछ मिठाइयों के डब्बे भी रखे हुए हैं अंदर दुकान मे एक बच्चा भी बैठा हुआ है।

यहाँ पे एक हॉल टाइप का दिखाई दे रहा है। ऑफिस जैसा वहाँ पे तीन चार कुर्सी भी रखी हुई हैं। यहाँ पे कंप्यूटर भी रखे हुऐ हैं।

यहाँ पे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। उसपे लिखा हुआ है मैं रामचंद्र पेट्रोलियम पवनपट्टी--

पेट्रोलपंप पे कुत्त्ते भी नज़र आ रहे हैं और और बिल्डिंग भी दिख रही है।